रोड है ये इस रोड के ऊपर एक तरफ एक इमारत है और एक तरफ से एक ऑटो जा रहा है।

इसमें एक टीचर भी है जो व्हाइट बोर्ड पर बहुत कुछ लिखकर समझा रहा है बच्चों को और इसके का वॉल व्हाइट है।

तें हम देख सकते हैं के एक बहोत बड़ा ही तालाब है। इसके बीच से एक बहोत बड़ा--

में हम देख सकते हैं की ये एक ए_टी_एम बूथ है।

इसके चक्का भी रखा है और एक मैकेनिक कार के आगे एरिया को खोल कर कुछ ठीक कर रहा है।

इस तस्वीर मे हम एक रास्ता और एक ईमारत जो की बन रही है वो देख रहे है ।

शॉप है। ये शॉप ग्रोसरी शॉप है। इसमें बहुत तरह के खाने के समानात और रोज़मररा के सामान मिल रहे हैं जैसे चाकलेट बिस्किट ।

और अंदर में चिप्स वगैरा मिल रहा है।